और सामने में ब्लू कलर का एक बैनर भी टंगा हुआ--

जो छोटे छोटे गाड़ी हो गया और कार भी।

ऊपर में कुछ कुछ सामान रखा गया है।

सामने में एक डस्टबिन भी रखा गया है।

जो आसमानी और व्हाइट कलर का है।

सामने मे पलंग भी है जो पिंक कलर का है।

सामने में फूल बनाया है जो का मदद से बनाया गया है।

यह एक मोर का दृश्य है जहां पर मोर अपना पंख फैलाए हुए बैठी है।

बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं।

जो वाइट कलर और लकड़ी का मदद से बनाया गया और शीशा का मदद--

यहां पर प्लेट में चावल रखा गया--

यहां पर नीचे में बहुत सारे फैले हुए--

सामने मे एक साइकिल और एक बाइक भी लगा हुआ है।

सामने में सीढ़ी भी बनाया गया है चढ़ने वाला।

एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट और रेड कलर का शर्ट पहनकर खड़ा है।

और यहां पर एक तर्जु वाला भी तौलने वाला भी रखा गया है।

सामने में बोर्ड है जो व्हाइट कलर का है।

और सामने में बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

व्हाइट कलर का चुन्हा भी पेड़ के नीचे गिरा हुआ है।

ये लकड़ी और लोहे का मदद से बनाया गया है और नीचे बहुत सारे टाइल्स भी लगे हुए हैं।

सामने में बी_पी नापने वाला भी रखा गया है।

सामने मे एक चेयर है जो भूरा कलर का है।

यहां पर बहुत सारे स्कूटी लगी हुई है।

सामने में बहुत सारे लाइट भी लगा हुआ है।

इसमें बहुत सारे सामान भी टंगे हुए और पर्दा भी हैं।

छोटे छोटे खिड़कियां भी है जो ब्लैक और उसमें लकड़ी भी लगाया गया है।

यहां एक घर का बाहर का दृश्य है।

जहां पर यहां पर बहुत सारा आदमी लोग काम कर रहे हैं।

आदमी लूंगी पहना हुआ है।

सामने में बड़े बड़े पेड़ भी लगा हुआ--

और नीचे में बहुत सारा सामान रखी गई है।

इसमें बोर्ड है जो वाइट कलर का है और नीचे में काट रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है और सामने में भी पेंसिल बॉक्स रखा गया है।

यह एक सैलून दुकान का दृश्य है।

यहां पर सामने में तीन शटर लगे हुए हैं।

बहुत सारे छोटे छोटे खिड़कियां भी है जो लोहे का मदद से और शीशे का मदद से बनाया गया--

यह एक एक्सरसाइज का दृश्य है।

और सामने में गेट है।

और सामने में एक बल्ब है जो वाइट कलर का है।

बहुत सारे लोहे भी रखी हुई हैं जो जिम करने वाला है।

वो सामने में सिलेंडर छोटा छोटा रखा गया है।

एक साइड बहुत सारा सामान भी रखी हुई है।

जहां पर दिखाया हुआ है।

और सामने में तीन तकिया रखी गई है।

और नीचे में बहुत सारे घास फूस लगे हुई है।